इसमें बहोत सारी पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं जो ग्रीन कलर के हैं और कुछ घरें दिखाई दे रहीं हैं जो व्हाइट कलर के हैं और सीमेंट कलर की हैं।

और एक लुटा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक आधा दुकान दिखाई दे रहा है जो सीमेंट कलर का है और वाइट कलर का है जिसमें कुछ लिखा हुआ है जो रेड कलर से और ब्लू कलर से लिखा हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक छोटा सा हस्पताल दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है और मिट्टी कलर का है और वाइट कलर का है।

और एक सेटर लगा हुआ है जो मिट्टी कलर का है और कुछ बैनर्स दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के है और रेड कलर के हैं और वाइट कलर के है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं और एक माइक दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

और कुछ तारे दिखाई दे रही है जो हल्के मिट्टी कलर की है और व्हाइट की है और ग्रे कलर की दिखाई दे रही है।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो ग्रे कलर के हैं।

और उनके हाथ में दो तीर दिखायी दे रहे हैं और बहुत सारी बाइके दिखायी दे रहे हैं जो ब्लैक कलर की है और ब्लू कलर की है।

इस इमेज में एक मुझे बड़ासा दुकान दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और येलो कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक औरत दिखाई दे रही है जो बैठी हुई है और कुछ मछली दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर के है और व्हाइट कलर के और एक--

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है।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

औ बहोत सारे समान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुर्सियाए दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है।

इस इमेज मुझे एक बड़ासा रूम दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है जिसमें कुछ लिए दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है जो हल्का ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

और कुछ फूल्स दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के हैं और रेड कलर के हैं और बैगनी कलर के दिखाई दे रहे हैं।

और एक शीशा का प्लेट दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो बैठा हुआ है और कुछ मोमबत्ती दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर के है और येलो कलर के है।

खड़े हैं यार कुछ बैनर दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर के है जिसमे रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है।